होटल के बाहर एक कार खड़ी हुई है।

और कई लोग मछली खरीद रहे हैं।

मछली बेचने वाले के पीछे कई साइकिल रखे हुए हैं।

और चित्र में बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है।

इस चित्र में एक दुकान है।

स्विमिंग पुल के आगे कई सारे पेड़ है।

उन पेड़ के नीचे एक बड़ा मैदान है।

के हाथ में घड़ी है और एक हाथ में बोतल है।

उसके पीछे बड़े से पत्थर है।

ऊपर दीवार में कई सारी लाइट लगे हुए है।

दीवाल का रंग सादा है।

यह एक सैलून है सैलून मे दो आदमी अपनी दाढ़ी बनवा रहें हैं।

यह एक होटल है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

यहां कोई प्रोग्राम चल रहा है।

उसके बाई ओर एक हाथी की मूर्ति है।

बिल्डिंग का गेट कांच से बना हुआ है।

यह एक मेडिकल है।

सोफा के सामने कई सारे आदमी खड़े हुए है।

नीचे ईंटा बिछा हुआ है।

जिस आदमी ने नीचे छड़ पड़ा हुआ हैउसका हाथ टूटा हुआ है।

चित्र में कई सारे बच्चे व्यायाम कर रहे हैं।

दिवाल सादा ब्ल्यू और ऑरेंज रंग से रंगा हुआ है।

यह एक होटल है होटल में काफी सारी कुर्सी और टेबुल लगे हुए है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

यह एक घर है।

घर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है।

यहां की सजावट बहुत ही अच्छा है।

यहां दो प्रवेश द्वार है।

यहां दो आदमी दिख रहे है।

दरवाजा के दायी ओर एक स्टेर लगा हुआ है।

ओ लोड के सामने पोल लगा हुआ है।

मेडिकल मे कई सारे लोग आए हुए हैं।

पलंग पर अखबार रखी हुई है और बैग रखे हुवे हैं।

पलंग पर एक आदमी लेटा हुआ है जिसके पैरों पर चोट आई हुई है और उसने मौजा पहना है।

चित्र मे कई सारे घर दिखाऐ गए है।

के नीचे कुछ अ सादे में शब्द में लिखा हुआ--